बिल्ड़िंग के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ जिस पर लिखा है स्वर्गीय श्री लक्ष्मी रामअगरवाल स्मारक सासिके चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़--

और यहाँ पे एक तालाब नज़र आ रहा है जिसके कोने -कोने में हम बहुत सारे पेड़ नज़र आ रहे है जो की अलग-अलग तरह के है।

और ऊपर छत पे लकड़ियाँ दिखाई दे रही है लकड़ी की बनी हुई --

यहाँ पर मैदान में कड़ी हुई दो बसे नजर आ रही है जो की सफेद रंग की है एक पे नीली पट्टी एक पे लाल पट्टी दिखाई दे रही है

प्लेटफार्म के नीचे हमें बेंचे डली हुई दिख रही है और सीढ़ियाँ बनी हुई नजर आ रही हैं ।

हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक पार्क नजर आ रहा है जिसमे घास उगी हुई हैं |

हमें यहाँ पर बहोत बड़ा पुल नजर आ रहा है जोकि बहुत चौड़ा भी दिखाई दे रहा हैं |

हमे यहाँ पर एक सड़क नजर आ रही है जिसके ऊपर नगर पंचायत का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ एक आदमी बाइक से निकलता नजर आ रहा है।